ये मैदान मे हमे बड़े-बड़े घर भी हैं।

इस पर बहुत सारे पंखे भी लगे हैं।

इस बगीचे में एक पतली सी सड़क है इस सड़क --

यहां पर एक लड़का खड़ा है।

यहाँ पर शायद कोचिंग चल रहा है।

यहाँ पर दो कुर्सी भी है यहाँ पर एक बैग --

यह सड़क के किनारे बैंक ऑफ़ बड़ोदरा का ब्रांच है।